लेकिन पूरा सन्नाटा छाया हुआ है कोई इंसान नहीं नज़र आ रहा है इधर |

ये हिन्दू का प्रमुख त्योहार होता है और ये सप्तमी के दिन के बाद यहाँ मेला लगता है और यहाँ सभी हिन्दू हो या फिर जिस धर्म के भी मानने वाले लोग हो जाते है जाते हैं मेला घूमने के लिए।